पेड़ दिख रहे हैं आकाश में सफेद बादल हैं।

लोहे की रॉड दिख रही है वायर दिख रहे है उसके बगल में एक बिल्डिंग बनी है।

है एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने हाथ में कुछ पकड़ा है।

सामने हरी कलर की शर्ट पहने एक आदमी बैठा हुआ है वाइट कलर की शर्ट --

सामने की तरफ मे एक गोमटी है।

अलमारी में शैम्पूस की बॉटल है उस तरफ मे--

जिसपे किसी पे लसन रखा हुआ है वो पीले रंग का--

कवर डला है वायर नजर आ रहा है गाड़ी दिख रही है सड़क नजर आ रही है आकाश नजर आ रहा है।